इस जगह पे हम एक छोटा-सा एक फैन भी देख पा रहे है।

ये एक चार्च है ।

इस बैंक के आसपास हम कुछ छोटे बड़े पेड-पोधे भी देख पा रहे है।

यहाँ पे हम एक घर के बाहर दो व्यक्ति को बैठे हुए देख पा रहे हैं जिनमें से एक फ़ोन हाथ में लेके बैठे हुए है।

इस रेल लाइन के आसपास हम बहुत छोटे से और बड़े से पेड़-पौधे--

एच.डी.एफ.सी. बैंक देख पा रहे है।

इस नदी के ऊपर हम एक खुला आसमान भी देख पा रहे है।

यहाँ पे हम एक दुकान दिख देख पा रहे है जहाँ पे बहोत सारे --